बहुत सारे झाड़ू रखे गए हैं छोटे हैं कुछ झाड़ू लंबे दिखाई दे रहे हैं और दुकान में खाने पीने का सामान टंगा हुआ है मिक्सचर वगैरह --

यहां कोई प्राचीन समय का --

खिलाड़ी नीले कलर का टी-शर्ट पेहने है और कुछ ऑरेंज कलर के मैदान बहुत हरा-भरा दिखाई दे रहा है मैदान के पीछे टावर गड़ा हुआ है और पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है।

कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है खाली स्टेशन है और शाम का समय है सूर्य का प्रकाश बहुत ही मस्त लग रहा है।

जिसमें बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रही है और ऊपर बड़ा आलवेस्टर लगा हुआ है पीछे से देखने से एक कोई स्कूल कॉलेज जैसा दिखाई दे रहा है और पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और मैदान बहुत खाली-खाली है।

कौन सा रेलवे स्टेशन है पता नहीं बाकी एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहे हैं और रेलवे स्टेशन अभी खाली लग रहा है किनारे किनारे सिक्योरिटी के लिए घेरा लगाया गया है और एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं लगभग तीन फ्लोर --